बहुत सारे यहां पेड़ पौधे अह नजर आ रहे हैं।

इस हाल में दो बड़े बड़े ट्रैक्टर रखे हुए हैं और बहोत सारी कुर्सियां--

सब्जियां ओर कुछ खरीदने आएं है और कुछ गाड़ियां अ भी यहां दिख रही हैं।